और ऊपर अ अ पकड़ने के हाथ अ पकड़ने के लिए भी वहां पे वो हैंडल लगे हुए हैं।

और बहोत सारी लाइट्स जली हुई जली हुई है।

डिफरेंट कलर की साड़ियां पहन के अह आदमी भी दिख रहे हैं अह बीच में कुछ बना के उसके अह पीछे घूम रही हैं नाच रही हैं।

पेंट वगैरा नहीं किया हुआ है। उस पे दो रोड्स लगी हुई है जिससे हाथों--

पकड़ा जा सकता है और दरवाजे को खोला जा सकता है और आजू बाजू मे सिमट किया हुआ है।